इस फोटो में तीन चार ठो बोरा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग पैदल भी चलते हुए नजर आ रहे हैं।

और नीचे में न्यूजपेपर फेंका हुआ है।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

इसके अंदर सारे तरीके का कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारा डेकोरेशन किया गया है।

इसमें दो तीन पलंग बिकते हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में एक जगह दिखाई दे रहा है।

इसमें के_जी_एन सहज जन सेवा केंद्र लिखा है।

पीछे में एक खिड़की भी दिख रहा है।

इस फोटो में बहुत सारा सीमेंट का लंबा लंबा सा रॉड दिखाई दे रहा है।

और अंदर में भी बहुत सारा सामान लटकाया हुआ है।

ऊपर से लाइट लगा हुआ है।

और ऊपर मे बहुत सारा ए_सी लगा हुआ दिख रहा है।

जिसके चारों तरफ रेड कलर के छोटे छोटे पौधे हैं।

और बीच में अंदर जाने का रास्ता भी दिख रहा--

यहां पे छोटे छोटे घास और पौधे भी उगे हुवे है उसके पीछे में वाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है।

और उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में बीच दिखाई दे रहा है जिसके नदी किनारे बहुत सारे सीप है।

इसमें पीछे में बहुत सारा ज्वेलरी का आइटम रखा हुआ है।

दो ठो ए_सी भी लगा हुआ है व्हाइट कलर का।

एक बच्चा रेड कलर का पहना हुआ है।

और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।